जिसमे अनेक प्रकार की सुविधाएँ होती हैं। और मत और ना ही बैलेंस कटने का डर होता है।

काफी लोगों की भीड़ भी है और बैंक के साथ ए.टी.एम की भी सुविधा प्राप्त है। बैंक से लोग पैसे निकालने और जमा करने के लिए --

यहाँ पर फूलों की बाजार लगी है ।

यहाँ पर बहुत सारी नतृकाये बैठी हुई हैं जो अनेक अ जो अनेक प्रकार के कपड़े तथा अम्म अनेक अनेक पोसि पोजिशन पर बैठी हुई हैं ।